इस फोटो में मुझे घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा हाल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बेड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई--

इस फोटो में मुझे बहोत सारी बसें ऑटो बाइक दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे दुकाने दिखाई --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

फोटो में मुझे गोदाम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे रोड दिखाइ दे रही है।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

इस फोटो में मुझे चारो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है।